इस इमेज में हमें एक कमरा दिखाई दे रहा हैं कमरे में बैलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो नीले सफ़ेद काले और लाल रंग के हैं।

पास में ही एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है और एक ओर कार है जो सफेद रंग की दिख रही है और दीवार दिख रही है जो सफेद रंग की है।

इस इमेज में हमे एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट के बाहर एक लाल रंग की बस खड़ी हुई है।

बाहर की तरफ ब बो बाउंड्री दिखाई दे रही है जो लाल और ब्राउन रंग की है और कुछ पौधा दिखाई दे रहे है सामने आसमान दिखाई दे रहा है जो नीले रंग का है।

इस इमेज मे हमे एक रेफ्रीजरेटर दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है पे --